इस दृश्य से में एक मजार शरीफ के अंदर का चित्र नजर आ रहा है।

और स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है।

यहां पे एक टेबल लगी हुई है।

और बाइक भी खड़ी है।

इस दृश्य में एक मंदिर की तस्वीर नजर आ रही है।

जिसके बाहर इंडियन ऑटो लिखा हुआ है।

इस दृश्य में एक दीवार दिखाई दे रही है।

और ए ग्रीन कलर की पैकेट भी रखी हुई--

और बीच में कुछ सामान भी रखे हुए हैं।

और पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रही है।

यह दृश्य में एक कोचिंग सेंटर की ऑफिस का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

यहां पे ढेर सारी ब्लू कलर की कुर्सियां रखी हुई है।

और एक ग्रीन कलर का बेंच भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक बड़ी सी गेट की तस्वीर नजर आ रही है जोकि वाइट कलर की है।

और पेड़ भी नज़र आ रहे है।

दो आदमी पूजा करते हुए दिखाई दे रही है।

एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

जहां पे बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं।

और कुछ तार भी दिखाई दे रहे है।

जहां पे छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं और मैदान भी दिखाई दे रही हैं।

एक डोसे रखी हुई है और एक कटोरी पे चटनी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

नी की कलर ग्रीन है और गिलास भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।